यहां पर एक आजू-बाजू में बहुत सारे गाडियां दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक आदमी बाजू में मोबाइल देख रहा है और वह एक आजू बाजू में बहुत सारे गार्डया है।

यह ग्रुप में कोई आदमी यहां से वहां जा रहे है।

के बाजू में एक ऑटो खड़ा है ऑटो के बाजू में और एक कार खड़ी है।

यहां पर बहुत सारी मिट्टी निकाल कर निकाल रहा है।

यह एक गार्डन का फोटो है।

वहां पर एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

यहां पर एक ग्राउंड भी दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर एक औरत भी है जो रेड कलर के कपड़े पहनी हुई है।

यह यह एक शादी का फोटो है।

यहां पर एक दुल्हन और दूल्हा खड़ा है।

वहां पर बहुत सारे पौधे भी हैं और वह एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

पर वो म्यूजिक को बजाने वाले वो पियानो भी रखे हुए है।

यहा पर बहुत सारी है ब्लू कलर का व्हाइट कलर का पियानो है।

यह कोई कटिंग की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है और बहुत सारे टावर है।

वहां पर ग्रुप में बच्चे है।

यह कोई रूम की फोटो दिखाई दे रही है।

यहां पर एक भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे दोनों साइड पे नारई की झाड़ दिखाई दे रही है।

और भी झेंडा फड़काने के लिए एक खंभा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक फ़यान अवेलेबल है कुर्सी है टेबल है।

आदमियों के सामने एक कार खड़ी है।